एक कार इधर है एक बोर्ड लगा हुआ है एक ऊपर बोर्ड है लंबा सा --

सूता हुआ है एक आदमी बैठा हुआ है वो गेट इधर है एक पंखा ऊपर लगा हुआ है येलो कलर का रंगा हुआ है पीला कलर का रंगा हुआ --

ऊपर बॉल लटका हुआ है एक उससे आगे बॉल है।

डांस क्लास है डांस क्लास में कुकर टीचर है इधर बच्चे लोग है उधर बच्चे लोग है उसके आगे बच्चे हैं।

एक तिरंगा झंडा लगा है नौ --

टेबल लगा हुआ है स्टाइलिंग टेबल है उसके बाद ऊपर किताब रखा हुआ है तकिया रखा हुआ है।

एक होटल है होटल के बगल में बोर्ड लगा हुआ है येलो कलर का इधर ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

एक इधर पैर दिख रहा है एक वाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है एक लाइट जड़ रहा है उधर ब्लैक कलर --

नेट लगा हुआ है सीसा लगा हुआ है नीचे ग्रीन लगा हुआ है गोल्ड कलर का बोर्ड लगा हुआ --

पानी है पानी में आदमी खड़ा है ऊपर आसमान है हरा कलर का आसमान है।

हरा हरा रंग का पत्ता है।

खींचने वाला भी है रस्सी वाला भी है।

एक हॉल है हॉल में एक बेटर खा रहा है एक बेटर उधर खा रहा है।

नीचे चेयर लगा हुआ है चेयर में खोली लगा हुआ--

किराना दुकान है उसमें डब्बा रखा हुआ है नीचे से फूल फूल है।

एक बोर्ड लगा हुआ है लाल कलर का एक उर्जला कलर का एक फिलर है।

ये भी घर है घर में टी_वी लगा हुआ है।

पॉल है पॉल के बगल में तार है फिर पॉल है गाड़ी है गाड़ी के ऊपर आदमी है।

सामान रखा हुआ है वाइट कलर का गाड़ी है।

जूता पेरे हुआ है दरीरा के अंदर में दौड़ रहा --

बाइक खड़ा है सीजी लगल है।

वाइट कलर का मकान है मकान में खिड़की है इधर पेड़ है एक रास्ता है।

उसके बगल में भी टैंपू है एक बाइक वाला है एक रिक्शा वाला है एक --

जग है छिलना है।

होटल है होटल में जग रखा हुआ है टेबल पे।

सिंगसर लगा हुआ है वेग रखा हुआ है एक लाइट रखा हुआ--

हेलीकॉप्टर है उसके नीचे कुछ रखा हुआ है नीचे चक्का लगा हुआ है फंकनी लगा हुआ है।

नारियल का पेड़ है फिर उधर भी पेड़ है।

एक ब्लू कलर का छतरी लगा हुआ एक हरा कलर का छतरी लगा हुआ है पाइप टाइप का कुछ है पीला टाइप का--

फूल है फूल में दीवाल घिरा हुआ है नीचे भी पाया है।

इसके बगल में भी घास है पानी है।

पार्क है पार्क में चार चक्कर लगा हुआ है उधर भी चार चक्कर लगा हुआ है उधर भी चार चक्कर लगा है उधर भी चार चक्कर लग--

एक चार चक्का उधर भी है एक टेंपू उधर है कांच का पेर है इधर ईटा बिछा हुआ--

हॉल है पाया है उधर भी पाया है जनरेटर रखा हुआ है।

इधर वाइट कलर का बॉल रखा है लगा हुआ है।

ए-सी है ए-सी के ऊपर बॉल है मर लगा हुआ है सोफा रखा --

सोफा के बगल में भी सोफा है।

छठ का टाइम है छठ पूजा कर रहा है सब मुखी रखे हुआ है।

उसके बगल में भी आदमी है बोट लगा हुआ है एक चार चक्का है एक स्कूटी है।

एक बैटरी दिख रहा है एक बोर्ड लगा हुआ है एक जा--

इधर भी पहाड़ है उधर भी पहाड़ है।

वहां पे कुछ रखा हुआ है इधर टेबल हो--

दो बाल्टी दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा है।